दोनों बच्चों ने हाफ फ्रोजन पहने हुए हैं।

जो की स्लाइडर लगी हुई है और बच्चों के घूमने की मशीन भी लगी हुई है।

इस दृश्य में एक लंबी सड़क दिखाई दे रही है जहां पे एक बाइक पार्क की हुई है।

बहोत सारी महिलाएं और पुरुष दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे बड़े घने पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे नट बोल्ट और कार की बाइक के समान रखी हुई है।

एक लड़का चेयर पर बैठा हुआ है गुलाबी कलर की शर्ट पहन के।

दीवार पे बहोत सारी पेंटिंग लगी हुई है।

पक्षी के दो पैर एक आंख एक चोंच दिखाई दे रही है ।

बहोत से साइकल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं अलग-अलग साइजेज के अलग-अलग कलर के।

इस दृश्य में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में एक पब्लिक प्लेस दिखाई दे रही है।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

पानी के अंदर एक काले कलर की मशीन और वाइट कलर की पाइप दिख रही है।

इस दृश्य में एक फैक्ट्री दिखाई दे रहीं हैं।

ज़रीस्य में एक बड़ी से मंदिर की गुंबद दिखाई दे रही है।

इस पार्क में पौधे के गमले रखे हुए हैं।

इस मैदान में बहोत सारे व्यक्ति खेलते चलते फिरते दिख रहे है।

बहोत सारे सोफे और टेबल लगे हुए है।

चेयर में दो व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहे हैं और वे पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं।

साइड में छोटे फूलों के पौधे लगे हुए हैं बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।